बरी सनाह आदमी है आई छत ढला रहा है।

यहाँ का फोटो घनी बरी सारा सना फुल लगा है और घनी बरी सारा सना आदमी है सब पंडाल झे साडी भी आ है।

पंडाल लगा हुआ है बरी सना आदमी है बरी सना फूल पत्ती लगा हुआ है।

पर्दा लगा हुआ है। नीचे पड़े लगा हुआ है।

आ बारिश बरी सना का बहरूप बिछा रहा हे ओर वहा पे एक आदमी हैं आदमी के अग बगल बैठा हुआ हैं।

यह रूम हैं अ-घनिसो बरी सना ओ आदमी उसमें हैं जिम कर रहा हैं अ-टाइल्स लगा हुआ हैं।

चारों पत्ती घेरा बंधी हो रहा हैं बरी सना बारिश बादियो पेड़ हैं।

मकान है उसमें काम लगा हुआ है बैरिसाना आदमी है।

एजा पड़ी बड़ी साना अथि लाईट जना रहा है आऊ बड़ी साना लाइट जना रहा हैं आदमी हैं बड़ी दूर-दूर आदमी जना रहा हैं गेट बना रहा है।